अ बरबट्टी रखे हुए है और यहाँ पे तराज़ू भी रखा हुआ है और वहाँ पे दो स्टील के दो बर्तन भी रखे हैं।

और उसमे ए फूल भी दिखाई दे रहे है और नदी में परछाई दिख रही है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

टेंटे लगे हुए हैं और यहाँ पे ज़मीन में रेड कारपेट भी बिछा हुआ है और यहाँ पे ऊपर भी न् नज़र आ रही हैं।

और यहाँ प अंदर जाने का दरवाजा भी दिखाई दे रहा जिसमें शीशा लगा है | पत्ते भी दिख रहें हैं दिखाई दे रहा है और लाइट की रोड भी दिख --